यह एक बड़ी सी बॉउंड्री है दोनों तरफ में बीच मे एक चैनल गेट लगा है। सामने एक सीढ़ी है ऊपर मे वाइट कलर की पेंट किया दीवाल है छोटा सा मंदिर है। ऊपर में साइड में ईटों की दीवाल है।

बड़ी सी शॉप है जिसके सामने काफी सारा सामान रखा हुआ है। काउंटर पे काफी सारा सामान रखा है। सामने एक रैक बनी है एक स्टूल है। सामने एक बाल्टी है झाड़ू है करीता है।

सामने एक बड़ा सा बिजली का खम्बा है बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। सामने एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी है। खम्बे में बहोत सारे वायर लगे हुए हैं। साइड मे एक झोपड़ी है काले रंग की और इसमें कव --